यहाँ पे एक मेन रोड है जिसमे गाड़ियां आती जाती रहती है और अगल-बगल में बहुत सारी गुमतिया है।

यहाँ पे एक गायक भी आए हुए है जो संगीत गा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग इसे देखने आए हुए हैं।

काफ़ी लोग भी आते हैं काफ़ी भीड़ होती हैं इस पार्क में सुबह-शाम लोग की भीड़ लगी रहती है ।

कसरत करने से हमारा सरीर फिट रहता है।